और इसकी दीवारों पर कांच भी लगा हुआ है।

और बाहर कुछ पेड़ पौधे भी है।

और इसके पास खंभे भी खड़े हैं।

यह एक बहुत बड़ा पैलेस है और इसमें बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

यह एक बहोत ही बड़ा खेत है।

और इसमें एक कुर्सी भी है।

यह एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक की दुकान है।

यह एक बहुत ही सुंदर कमरा है।